पेट का दुकान है जिसमें बहुत सारे पेंट बाल्टी में रखे हुए हैं जिसमें बहुत सारे बाल्टी ब्लैक कलर के है बहुत सारे बाल्टी जोकि ग्रीन कलर के हैं।

इसमें बहोत सारी बैलून लगी हुई है जैसे कि व्हाइट कलर की और रेड कलर की लगी हुई है।

देख सकते हैं कि ये गढ़वा का एक दुकान नवाब फैशन है।

हम देख सकते हैं कि यह एक प्रिंटिंग का दुकान है।

बगल में एक बहोत बड़ा सा प्रिंटिंग का मशीन रखा हुआ है जो की वाइट कलर के घर में रखा हुआ है नीचे हुआ है नीचे रेड कलर का कारपेट बिछाया हुआ है।

बच्चे रेड कलर के स्वेटर कुछ बच्चे बस वाइट कलर के शर्ट पहने हुए है।

सभी बच्चे ने बुक और कॉपी खोल के रखी है और सभी टीचर की ओर देख रहे हैं।

इसके बगल में बहुत सारे कपड़े फेके हुए है।

पास में एक बेंच लगाया हुआ है।

ऊपर में ब्लू कलर का प्लास्टिक लगाया हुआ है।

घास में व्हाइट कलर का लाइट लगाया हुआ है जो कि दूर में फैला हुआ है।

में मिरर लगाया हुआ है।

उसके बगल में हम देख सकते हैं कि एक रेड कलर का रोज है।

इसमें बहोत सारे ग्रीन ग्रीन कलर के पौधे हैं।

जो कि एक रेड कलर की एक ऑरेंज कलर की है।

कार्पेट पे रखा हुआ है बेंच पे।

इसके बगल में पूरा सिस्टम रखा हुआ है डी_जे को बजाने वाला।

जिसमें सभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं।

सामने में दो दुकान है।

और पिंक और वाइट कलर का पोस्टर चिपकाया हुआ--

पास मे दो भगवान की मूर्ति रखी गई है।

बहुत सारी साइकिल लगाई गई है साइकिल का कलर रेड ब्लू ब्लैक --

एक ट्रक का एक पहिया निकाला हुआ है और एक पहिया लगाया हुआ है।

यहा पे खाना और नाश्ता का उत्तम परबंध है।

इसके जिसमें बहोत सारे वस्तुएं टांगे हुए हैं जैसे कि गुड्डा।

यह एक किताब का स्टोर है जिसके अंदर एक व्यक्ति जो की किताब बेच रहा है और बाहर एक व्यक्ति जोकि खरीदने आया है।

आसपास बहुत ही बड़े बड़े पेड़ है जो कि ग्रीन कलर के हैं।

बगल में बहुत सारा पोस्टर चिपका हुआ है जो की फिल्म की मूवी का है।

रेड कलर का बाल्टी रखा हुआ है।

उपर में एक पोस्टर चिपकाया हुआ है।

जू का फोटो है जिसमें बहुत सारे हिरण हैं।

पास में एक रॉड है जो की येलो कलर का है।

एक ने ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ है।

व्हाइट कलर का है जिसके अंदर दो तीन ए_सी लगाए गए हैं।

उसके बगल में बहोत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं।

आस पास बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि व्हाइट कलर का शर्ट पहने हुए हैं और बहुत व्यक्ति जो कि अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं।